कुछ ट्रैनें पहले से भी खड़ी हैं। यहां पर बिजली के बड़े-बड़े खम्बे भी हैं और हरे-भरे बड़े-बड़े वृक्ष भी हैं।

ये वाटरपार्क हैं जहाँ पर पानी में बहोत सारे खिलौने बनाए गए हैं।

गौतम बुद्धा की मूर्ति एक बड़े से कमरे में है जिसमे सीमेंट की गयी है ।